का रोड है जिसके किनारे पर बहुत सारी शॉपस् लगी हुई हैं वह एक बिल्डिंग है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर बंधन बैंक ---

आस-पास पौधें घर बने हुए हैऔर पेड़-पौधे लगे हैं।

ग्राउंड बना हुआ है इस किनारे पर टेबल रखी हुई है तथा बाहर की तरफ बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए--

एक फीमेल जनरल वार्ड हैं जहाँ अंदर की तरफ एक बेड रखा हुआ है बेड पर एक--

ग्रीन कलर की पट्टी बनी हुई हैं तथा एक व्यक्ति यहाँ पूजा कर रहा हैं बगल में एक मटका रख हुआ हैं जिसके अगल-बगल दो लोटे रखे हुए हैं तथा थाली रखी--

यह एक वाटर पार्क है जहां एक स्विमिंग पूल बना हुए है स्विमिंग पूल के अंदर तीन लड़के खड़े हुए है मतलब किनारे पर एक व्यक्ति दो बच्चे खड़े है।

आसपास बहोत सारे व्यक्ति गार्डन मे बैठे हुए है और पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहाँ एक स्टेशन हैं जहाँ बहोत सारे औटोरीक्षा खड़े हुए हैं तथा औटोरीक्षा के बगल मे एक लड़का खड़ा है जिसके कंधे पर बेग टंगा हुआ है तथा आसपास पेड़-पौधे लगे हुए हैं।